यह भारत मान नमन स्थल है जो की मुज्जफरपुर में अवस्थित है। यह समरहालाय के पास है। इसके बगल में कचहरी है।

यह एक चर्च है जो दो-दो मंजिला इमारत है इस पे --

पुरुष और कुछ महिलाएँ हैं जो कि किताब-कॉपी खरीदारी कर रहें हैं।

यह एक बस है जिसका नाम अमर ज्योति है यह ऐयर कंडिशनर बस है ।

और वातावरण अनुकूलित लिखा हुआ है।